सुंदर है यह बिल्डिंग को बनाने मे काफी ज्यादा पैसा खर्च हुआ है।

पैसा उठाने के लिए और पैसा निकालने के लिए आते --

सुंदर है यह हॉल मे एक --